और इसके चारों तरफ बड़े-छोटे--

और इसके साइड साइड में बहुत सारे बस भी दिख रहे है और इसके च इसके साइड में एक ठो मकान है और इसके चारों तरफ छोटे-बड़े --

यह एक बहुत बड़ा जगह है यह एक राजा-महरा महला-महराजा का जमाना का एक ठो महल जैसा दिक रहा है जहाँ पस एक व्यक्ति घूमने के लिए आया है।

और इसके साइड में आदमी लोग बात-चीत कर रहे है और ग्राउंड के बीच में एक व्यक्ति क्या कर रहा है और यह रात का समय है।

यह एक गणेश भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति दिख रहा है और इसके सैड सैड में बहुत सारे कापी पुस्तक और फुग्गे और फेवीक्विक नज़र आ रहे है मुझे तो ये दुकान जैसा प्रतीत हो रहा है।